वेलकम टू टूरिस्ट कैप्शन ऑफ महाराष्ट्रा औरंगाबाद --

कुछ व्यक्ति आ रहे हैं कुछ व्यक्ति जा रहे हैं।

यह एक होटल की रूम की दृश्य है।

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें बायो ड्रायस्टी पार्क लिखा हुआ है।

यहां पर काउंटर भी लगा हुआ है साथ साथ चेयर भी लगे हुए हैं।

यह एक स्टेज की दृश्य है।

सोफे का कलर ब्राउन एंड वाइट है।

इस दृश्य में बहोत सारी प्रकार की दारू रखी गई है।

इसमें एक घड़ी भी टंगी हुई है।

यह एक शॉप है जहां पर बहोत सारे अलग अलग तरह के पेंट मिलते हैं।

दुकान का कलर व्हाइट एंड रेड है।

यह एक बिल्डिंग है जहां पर बोर्ड लगा हुआ है बिरसा औद्योगिक परीक्षण केंद्र का।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है तथा इस हॉस्पिटल का नाम द्वारिका जी हॉस्पिटल है।

बैलून से डेकोरेट भी किया हुआ है।

के साथ साथ एक काउंटर है जिसके ऊपर एक कैलेंडर भी मौजूद है।

इसका फेस ब्लर किया गया है।

यह एक पिकनिक स्पॉट की जगह है।

यह एक शॉप की दृश्य है तथा यहां पर बहोत सारी टायरें दिखाई दे रही हैं।

लोहे का रेलिंग भी लगा हुआ है।

बहोत बड़ी स्कूल दिखाई दे रही है।

बहुत बड़ा मैदान भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी बसे यहां पर मौजूद है।

यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।

बालू छरी सीमेंट भी दिखाई दे रहा है।

नीचे कारपेट भी बिछाया गया है।

भी खड़ा हुआ है उसके साथ साथ रेड कलर की टी शर्ट पहन--